तीन लोग खड़े हैं। उसके पास में एक बड़ा सा गेट है और एक चौकी पड़ी है एंड उसके पास में खड़े हैं। एक काउंटर लगा हुआ है। उसके बाजू में कुर्सी रखी हुई हैं।

आसमान है उसके नीचे खेत लगा हुआ है उसके पास में पहाड़ है काफी अच्छे और नीचे अच्छी-अच्छी छोटी-छोटी फुलवारी है और आसमान में ब्लू कलर एंड वाइट कलर है और नीचे जमीन पे फुलवाडी उगी है।

ग्राउंड है। वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और हरी-हरी घास हैं। उसके पीछे पेड़ लगा हुए हैं। एक सामने काफी सारा पड़ा है एंड उसमें लोग घूम रहे हैं। पार्क बन पार्क बना हुई है।

एक पाईप गया है। समरसेबिल है वहां पे और उसके पीछे और घर बने हुए हैं। काफी अच्छे पूरी बस्ती है ग्राउंड है और बड़े-बड़े प्लेयर खड़े हैं।

ए है वहाँ पे उसमें जलेबी काफी सारी जलेबी रखीं हैं और पूरे रात हो रही है वहां पे रात है एंड एक उसके ऊपर नीचे उसके नीचे एक कढ़ाई है कढ़ाई में नेवासा काफी ज्यादा रिफाइंड है और ब्लैक कलर की पूरी कढ़ाई है ।

एक काफी अच्छा एक चाय की दुकान है। दुकान के पास में एक और गेट लगा हुआ है। एक दुकान और है पास में एक सामने साइकिल खड़ी हुई है और एक बाल्टी रखी हुई है। सामने को एंड और उसपे --